इस फोटो में एक दुकान दिखाई गई है।

देख सकते है यहां पर आके की कैसे कीमत के ये पंखे है।

यह फोटो पहाड़ों से ली गई है इसमें बहोत सारे पहाड़ हैं।

और बहुत ही सारे पेड़ पौधे हैं देखने पर पता चलता है कि --

यह फोटो एक गेम की है जिसमें टेबल पर लकड़ी के तीर से मारकर --

यह डेयरी है यहां पर बहुत मात्रा में पनीर और दूध मिलता है।

देखने पर बहोत सुंदर लग रही है यह स्कूल पेड़ पौधे भी रखती है।